इतने सारे पत्थर दिखाई दे रहे है पत्थर ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे है कुछ छोटे-छोटे दिखाई दे रहे कुछ बड़े-बड़े दिखाई दे रहे है और मुर्गा दिखाई दे रहा है चार पाँच व्हाइट कलर की कुछ दिखाई दे रही है ।

एक दूकान दिखाई दे रही है दुकान मे वाइट कलर का पेंट हो रहा है एक नीले कलर का भी हो रहा है एक दीवाल पीले कलर का पोस्टर भी लगा हुआ है और मेहरून कलर की सटर लगी हुई है ऊपर चद्दर भी दिखाई दे रही है बहोत सारे जेंट्स अंदर दिखाई दे रहे।

छिपी दिख रही है। और बहुत जंगल जैसा दिखाई दे रहा है। और ऊपर सफेद कलर का बदल भी दिख रहा है लाल लाल सा हो रहा हैं।

दिखाई दे रहा है मकान में शटर दिखाई दे रहा है कुछ गोल्डन कलर कि दिख रही है कुछ काले-काले कलर कि दिखाई दे रहे है कुछ बक्से भी रखे हुए है एक चेंज भी दिख रहा है स्कूटी दिखाई दे रही है लाइट भी जल रही है और बहुत अच्छा --